और साफ सफाई कर रहे हैं ये आदमी--

और बहुत ही अच्छे घर हैं बहुत ही अच्छे डिजाइनिंग की गयी है इस घर की--

सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह ये बहुत ही काम का ट्रक होते हैं इनमें कई ज्यादा सामान लोड करके ले जाया जाता है |--

मूर्ति को विसर्जन कर रहा है जो देखने में काफी सुंदर एवं काफी अच्छे लग रहे है।

यह एक कॉफी शॉप है जहां सब कोई कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं बहुत ही अच्छे कॉफी यहाँ पिलाते हैं सबको और बहुत ही नामी कॉफी शॉप है।